जिम का दृश्य है इस जिम में कई लड़के एवं लड़कियां अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए --

मोती महल डो डोमिनोज कल्याण और भी कई प्रकार की दुकानें होती हैं।